ए इ एक आदमी भी खड़ा हुआ है उसके उसके तो रस्सी से बांदा गया हैं और मिशन भी इंजन भी खराब हो गया हैं।

ये तो एक स्विमिंग पूल है यहां तो स्विमिंग पूल खाली है पानी पानी भरा हुआ है और दूर से एक--

और यहां ज्यादा लोग हैं और यहां एक पेड़ भी दिखा रही है छोटा सा।

ये तो एक म्युजियम जैसी हैं यहां डायनासोरस का फोटोज है दो डायनासोरस हैं छोटा छोटा वाला और यहां--

पीछे ज्वेलरी बॉक्सेस दिखा रही है डेकोरेटिव है और तीन चे चेयर्स भी--

और ऊपर कुछ लाल रंग का डिजाइन से इंटीरियर है और फ्लोर भी ज्यादा अच्छा है ज्यादा साफ दिख रा दिख रहा है।

यहां तो एक आदमी ने डांस कर रहा है वो तो कतक क नाम की डांस हो गई होगी।

ये तो एक ओपेन प्लेस है यहां तो अ नीचे घास ग्रीन कलर का है दूर से एक बिल्डिंग दिखा रही है वो तो वाइट कलर का है।

ये तो कुछ ब खेलने का सामान है यहां न फुटबॉल और शीटील बैट ।

ये तो एक म कुछ काली प्लेस हैं यहां तो जा ज्यादा --

ये तो एक शॉप है यहां तो ज्यादा लोग खड़ा हुआ है यहां तो ब्लू कलर का बॉक्स से कुछ दिखा रही है।

और लाल रंग का भी कुछ दिखा रही है यहां चार लोग हैं वो एक आदमी--

जरकिन पहना है और एक आदमी ब्लैक एंड ब्लैक शर्ट पहना हुआ है एक आदमी पिला रंग का जरकिन पहना --

उम्म पत्ता हेना पिला रंग दिखा रही है और दूर से एक बिल्डिंग दिखा रहा है और यहाँ --